यह एक क्लास-रूम है इसमें एक शिक्षसक पढ़ रहे हैं जो डेर_कलर कि टी_शर्ट पहने हुए हैं इसमें सामने बैठ हुआ विद्यार्थी पीले कलर का टी_शर्ट पहन हुआ है पास लाइट-कलर कि बोतल राखी हुई है यह सर कि और देख रहा है यह चश्मा लगाया हुआ विद्यार्थी है ।

ये एक यूनिवर्सिटी है । जो हरे रंग की बिल्डिंग पुती हुई है। इसमें पीले रंग की अ- खाचे खाचे दिखाई दे रहे है।

एक यूनिवर्सिटी हैं। इसमें दोनों तरफ बिल्डिंग हैं। बिल्डिंग सफेद रंग कि पुती हुई हैं। नीचे कि ओर हरे रंग कि घास उगी हुई हैं।

एक नदी है। अगल -बगल तक मर -मर कि पत्थर दिखाई दे रहे हैं। जो गिरे रंग कि हैं।

सुंदर दिखाई दे रहे हैं। पीले रंग की यह पठार दिखाई दे रहे है।